सर पर एक लाइट लगी हुई है। खम्बा लगा हुआ है एक डाइनासोर का स्टैचू बना है लोग बेठे है छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और रोड हैं।

बहुत सारे लोग है। सीढ़ी है और रेलिंग भी है और डेकोरेशन कर रहे है फोटो क्लिक कर रहे है।